बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चलते-फिरते आ सामने एक बिल्डिंग बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है जिसके नीचे--

धूप बहुत तेज है ऊपर टीन शेड डाला हुआ है बिजली के बहुत सारे वायर लगे हुए हैं।

कुछ लोगों की भीड़ जमा है कुछ लोग सामान खरीद रहे है एक बड़ा साइज स्टूल रखा है एक औरत है जो जा रही है सामान लेके। ऊपर बिजली का खंबा है जिसके ऊपर लाइट -ए --

बिल्डिंग हे जिस के ऊपर सफेद कलर का पेंट किया हुआ है रेड कलर का पेंट किया हुआ बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई है जामीनी कलर की--

उन्हें बहुत सारे लोग हैं लाइट -ए लगी हुई है पीले कलर की बहुत सारी लोहे की रेलिंग बनी हुई है बहुत सारे लोग दिखा--

रोड है। जिसके आसपास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है नीचे खाने पीने के दुकान स्टॉल्सस लगे हुए हैं।